ये किसी मंदिर की या चर्च की फोटो नजर आ रही हैं।

ढाबा नजर आ रहा है जो श्याम शुद्ध वैष्णो भोजनालय के नाम से है।